लिबरे ऑफिस draw में 3d objects पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि निम्न प्रयोग करके 3d objects को कैसे बनाते हैं:
आप सीखेंगे objects पर 3d effects को edit और एप्लाई यानि लागू करना और duplication प्रयोग करके विशेष effects बनाना
इस tutorial का उपयोग करने के लिए आपको draw में basic और intermediate level के tutorials के साथ परिचित होना चाहिए
यहाँ हम अपने operating system की तरह ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 उपयोग कर रहे हैं
अब एक geometry chart बनाते हैं जो 2d आकृति और समतुल्य 3d form दिखाता है उदाहरणस्वरूप वर्ग एक 2d object है और घन इसकी 3d form है
यहाँ हमारे पास 3dobjectschart named एक नयी draw file है
drawing शुरू करने से पहले grids और guidelines को सक्षम करते हैं
main menu से view पर click करें grid और display grid चुनें
फिर दोबारा view पर click करें guides और display guides चुनें
मैं दोनों rulers को centimeters में set करना चाहती हूँ
mouse pointer को क्षैतिज ruler पर रखें अब right click करें और centimeter चुनें
mouse pointer को ऊर्ध्वाधर ruler पर रखें दोबारा right click करें और centimeter चुनें
अब पेज के ऊपरी तरफ एक text box बनाएं
अब इसके अंदर text geometric shapes in 2d and 3d प्रविष्ट करते हैं
अब snap line प्रयोग करके पेज को दो लंबवत भागों में विभाजित करते हैं
ऊर्ध्वाधर ruler पर click करें और इसे draw पेज तक खींचें
ऊर्ध्वाधर dotted line दिखती है
dotted line को पेज पर रखें जिससे पेज दो आधेआधे भागों में विभाजित हो जाये
बायीं तरफ text box प्रविष्ट करें और इसके अंदर type करें 2d shapes
अब दायीं तरफ एक अन्य text box बनाएं और इसके अंदर type करें 3d shapes
अब 3d toolbars को सक्षम करते हैं
main menu से view पर click करें toolbars और 3dobjects चुनें
दोबारा view पर click करें toolbars और 3dsettings चुनें
3dobjects और 3dsettings tool boxes दिखते हैं
पहले हम 2d shapes बनायेंगे
हम एक आयत एक वर्ग एक वृत्त और एक त्रिभुज बनायेंगे और उन्हें एक दूसरे के नीचे रखेंगे
2d object प्रयोग करके 3d object प्राप्त करने के method को extrusion कहते हैं
moved रूप से 3d object बनाने के लिए सतह बाहर की तरफ निकाली जाती है
पहले आयत के रंग को turquoise 1 से बदलते हैं
आयत की एक प्रति बनाते हैं
आयत की प्रति को खींचें और इसे पेज के दायें आधे भाग में रखें
अब यह चयनित होते हुए भी context menu देखने के लिए rightclick करें
अब convert पर click करे और to 3d चुनें
2d आयत एक घनाभ में बदल गया है
आयताकार आकृति के अंदर rectangle लिखें
तथापि हम 3d objects के अंदर text नहीं लिख सकते हैं
text type करने के लिए हमें text tool उपयोग करने की जरूरत है
text tool पर click करें और घनाभ के अंदर एक text box बनाएं
इसके अंदर टेस्ट cuboid लिखें
text box और घनाभ दो अलग objects की तरह कार्य करते हैं इसलिए इनका समूह बनाते हैं
इसी प्रकार हम वर्ग वृत्त और त्रिभुज को रंग कर सकते हैं और 3d objects में बदल सकते हैं
हमने 2d और 3d आकृतियों का chart बनाने के लिए extrusion उपयोग किया
इस tutorial को रोकें और यह नियत कार्य करें
अपनी draw file में एक नया पेज जोड़ें
एक वर्ग बनाएं और text square लिखें
text के साथ वर्ग को 3d में बदलें
उस text की 2d वर्ग के text से तुलना करें
hint: 3d objects को बनाने के लिए 3d settings toolbar प्रयोग करें
draw बनीबनाई 3d आकृतियाँ प्रदान करता है
आप इन आकृतियों को 3d objects toolbar प्रयोग करके प्रविष्ट कर सकते हैं
अब अपनी draw file में एक नया पेज प्रविष्ट करते हैं
अब 3d objects toolbar से मानिये shell नामक एक आकृति चुनते हैं
फिर इसे पेज पर बनाते हैं
draw 2d objects पर आकृति का rotation प्रयोग करके 3d objects बनाने की भी अनुमति देता है
अब अपने draw पेज पर एक 2d आकृति मानिए वृत्त बनाते हैं
context menu के लिए right click करें और convert चुनें फिर to 3d rotation object चुनें
देखें कि वृत्त पर क्या होता है अब यह एक 3d object है
नीचे drawing toolbar पर fontwork gallery icon पर click करें
अब favorite 16 चुनें और ok button पर click करें
हमारे draw पेज पर text fontwork दिखता है
हम इस text को ज़रुरत के अनुसार resize कर सकते हैं
अब how इसके स्थान पर कुछ और text लिख सकते हैं how वह कैसे करते हैं
केवल text fontwork के अंदर doubleclick करें
अब आप बड़े वाले text के अंदर शब्द fontwork काले रंग में देखेंगे
इस text को चुनें और type करें spoken tutorials
अब draw पेज पर कहीं भी click करें
शब्द spoken tutorials अब पेज पर दिखेगा
आगे सीखते हैं कि 3d objects पर effects यानि प्रभावों को कैसे लागू करते हैं
अब अपनी गोलाकार आकृतियों पर effects लागू करते हैं
अतः अब इसे चुनें और context menu के लिए right click करें अब 3d effects चुनें
यहाँ आप अनेक विकल्प देख सकते हैं
प्रदर्शन उद्देश्य के लिए depth parameter को 3cm में बदलते हैं
segments में horizontal को 12 करते हैं
normal में flat विकल्प चुनते हैं
इसकी प्रीव्यू window में object की उपस्थिति को देखें
अब dialog box के ऊपरी दायीं तरफ के कोने पर assign icon पर click करें
आगे dialog box से exit करने के लिए ऊपरीबायीं तरफ के कोने पर x mark पर click करें
अब आकृति देखें effects जो हमने चुनें इस पर लागू हो गए हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है slide पर प्रदर्शित की तरह ही समान picture बनाएं
इसको प्राप्त करने के लिए 3d effects dialog box प्रयोग करें
आप 2d और 3d objects के साथ duplication प्रयोग करके special effects भी बना सकते हैं
अब एक नए पेज का निर्माण करते हैं और इसमें एक आयत बनाते हैं
अब 2d आयत पर duplication प्रयोग करके एक इफ़ेक्ट बनाते हैं
main menu से edit चुनें और duplicate पर click करें
duplicate dialog box दिखता है
निम्न values प्रविष्ट करेंnumber of copies = 10
placement में x axis = 10
y axis = 20
angle = 0 degrees
enlargement width और height को default ही रखेंगे
हम start रंग को पीले और end रंग को लाल से बदलेंगे
ok पर click करें
अत्यंत विशेष इफेक्ट्स जो हमें मिले उनको देखें
आप angles और अन्य values बदलकर और अधिक effects प्राप्त कर सकते हैं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
इस tutorial में हमने सीखा कि निम्न विकल्पों का प्रयोग करके 3d objects को कैसे बनाते हैं
हमने 3d objects को edit करना और objects पर 3d effects लागू करना सीखा
हमने duplication प्रयोग करके special effects बनाने भी सीखे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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह भारत सरकार के it it आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समथित है